जो की उजले कलर और ब्लू कलर की बॉटम से रंगी गयी हैं बहुत बड़ा काम्प्लेक्स चारों ओर बिजली की सुविधा है सामने मैदान है जिसमें बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है।

सामने तीन मूर्तियों पे साड़ी भी पहनाई गई है। सामने पेपर बिखरे हुए हैं।

उसको स्टील के पिलर में लोहे के सिक्कड़ से चारों और से घेरा गया है। बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ है। बहुत हीं अच्छा दृश्य और सुन्दर है।

यह एक शॉपिंग काम्प्लेक्स है | जिसमें के संगीत इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है | जो कि सेल्स एंड सर्विसेस करती है | अंदर में इलेक्ट्रिक की बहोत सारी उपकरण रखी हुई है | रोड पे एक बुलेट गाड़ी स्कूटी और बहोत सी गाड़ियाँ हैं और रोड पे लोग चल रहे हैं |

एक शॉपिंग काम्प्लेक्स लग रहा है जिसके एक और सैलून खुली हुई है। बीच में एक ट्रक लगा हुआ है। दूसरी तरफ की दुकान का शटर बंद है। बगल में और एक बिल्डिंग है।

बहुत ही हरी-भरी पेड़-पौधे चारो बगल से दिख रहें हैं। बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है और कच्ची सड़क दोनों और से --